यहां सामने की तरफ कमरा दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर बोर्ड भी लगे हुए हैं।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां सामने की तरफ एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

यहां सामने की तरफ एक कक्षा दिखाई दे रही है।

यहां सामने की तरफ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं

सामने की तरफ कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है कुछ पत्ते भी डले हुए है।

कुछ लोहे के पाइप भी लगे हुए हैं।

यहां सामने की तरफ दुकाने दिखाई दे रही हैं।